यहां पर भी बहुत सारी मूर्तियां राधा और कृष्ण भगवान की रखी हुई है जो कृष्ण भगवान की मूर्ती है वह ब्लर कर दी गई है इन्होंने--

यहां भी एक दुकान दिखाई पड़ रही है इस दुकान में बहुत सारा सामान भरा हुआ है।

यहां पर एक पार्क जैसा दिखाई पड़ रहा है इसमें एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है।

इस चौराहे पर कुछ औरतें और आदमी भी हैं और ऑटो रिक्शा भी एक खड़ा हुआ है।

पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ है और चारों तरफ झंडिया गड़ी हुई है और छोटे छोटे पेड़ भी है।

इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है और यह पुल एक स्लैटी कलर लोहे का बना हुआ है नीचे भी बहुत बड़े बड़े श्रीमेंट के वो बने होते हैं।

यहां पर भी अह छत के ऊपर स्लेप पड़ रही है और छत और स्लेप के ऊपर दो तीन आदमी खड़े हुए हैं।

एक खंभा अंअं जैसा लगा हुआ है और उसके पीछे लाइट्स भी लगी हुई है खंबे में और दो तीन चार पांच बैठने वाले भी बने हैं।

इस तरफ भी छोटा सा एक मकान बना हुआ है और बहुत सारे बिल्डिंगें भी दिखाई पड़ रही हैं।

एक कपड़े की ओ मेडिकल भी खुला हुआ हैं। इधर एक साड़ी ब्लू कलर की टंगी हुई है। अंदर एक दरवाजा जिसपे ताला बंद लगा हुआ है। एक मीटर भी है औ आगे हल्की हल्की टीन भी पड़ी हुई हैं और इधर बीच में एक नाली निकली हुई हैं।

यह एक घर की रास्ता गली की लग रही है इस गली में रोड एकदम साफ बढ़िया पड़ी हुई है।

इस बैंक में ये पैसे निकाले जाते हैं और यह एक दरवाजा कांच का लगा हुआ एक पोस्टर भी अंदर लगा हुआ है।

उनके हाथों में बेने हैं वह सफेद सफेद कलर के यहां पर नृत्य हो रहा है और चारों तरफ टेंट का भी तंबू बनाया गया है।

यह एक रूम बना हुआ है इस रूम में एक बेड पड़ी हुई है बेड के ऊपर दो एक बेडशीट भी लगी हुई है दो कंबल भी रखे हुए हैं दो पिलो भी रखी हुई हैं।

खंभा भी दिखाई पड़ नीचे श्रीमेंट की टीन बहुत सारी पड़ी हुई है और बाइक स्कूटी और चर पहिया भी खड़ी हुई है।

या एक चौराहा दिखाई पड़ रहा है इस चौराहे पे बहुत सारे लोग आते जाते नजर आ रहे हैं और ऑटो रिक्शा भी रखे हुए हैं।

इस गेस्ट हाउस में बहुत सारे लोग सजावट कर रहे हैं दो लोग और वो सामान भी इधर से उधर रखा जा रहा है।

यहां पर सब दीपावली मना रहे हैं और कुछ महिलाएं खड़ी हुई है जिन्होंने सफेद कलर की साड़ी पहन रखी है।

इनमें लाइट जल रही है कुछ महिलाएं और आदमी जिन्होंने मास्क लगा रखा--

और नीचे की तरफ पत्थर भी पड़े हुए हैं और एक डब्बे में पेंट जैसी है।

यहां पर भी एक नदी बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है और एक रास्ता बहुत अच्छा जिना सा बना हुआ है जिसपे एक महिला और एक जेंट्स जा रहा है।

एक गोल गोल बनाया गया है उस पे मूर्ति नीचे की तरफ बहुत लोग आते जाते नजर आ रहे हैं और बहुत सारे पेड़ भी खजूर के दिखाई पड़ रहे--

यह एक छोटी सी बैंक खुली हुई है जिनमें बोहोत बड़ा एक बैनर भी लगा हुआ है इस पे बैंक ऑफ़ बड़ौदा लिखा हुआ है।

एक महिला अपने बच्चे को ले लेकर जा रही है एक आदमी ने फोटो खिंचवा रहा है जिसने हरे और काले कलर की शर्ट टी_शर्ट पहन रखी है और जींस भी पहन रखी है।